आजू बाजू अ पानी के फुहारे गिर रहे हैं।

टेंपल के है बाहर ट्रीज है और --

चार चेयर दिखाई जा रही है लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे लोगों की चीयर्स करने के लिए --

सामने दो पर्सन का पिक्चर है एक टेलीफोन का टेलीफोन नाम का है एक चीजें।

इ सामने दी गया पिक्चर एक सनसैट वाइब का है।

है बीच के बाहर का वहां पे बैठने के लिए बेंचस हैं।

ये सामने दी गई पिक्चर राजन सिनेमा के बाहर से पिक्चर लिया गया है।

सामने दी गई पिक्चर एक मंदिर के बाहर का है।

वो मिट्टी का पॉट वगैरा लटका के गए हैं।

और पीछे का बैकग्राउंड इसपे ब्लू और डार्क ब्लू कलर का है और ये पुलिस स्टेशन --

सामने दी गई पिक्चर एक मेडिसियल शॉप की है।

ड्रगिस्ट एंड केमिस्ट प्लस का सिंबल बनाया गया जो कि मेडिकल का है।

वो है डार्क ब्लू कलर में साइड में एक काउंटर है जिसमें कंप्यूटर टेबल सी_पी_यू चेयर वगैरा--

इसमें एक पर्सन है अपनी फेस पे अ मास्क लगा के कुछ बैठा है।

और वो अपना सेल्फी ले रहा है कांच में और आजू बाजू उनके हिमालया का फेस वा--

उसने अपने हाथ को डेकोरेट किया है अलता से।

एक चेयर रखा गया हैं बैलून है और पीछे बोर्ड है।

सामने दिया गया पिक्चर एक लॉरिअल सैलून का है जो कि यहां पे --

ये इधर बनियान ट्री का भी एक कोकोनट ट्रिप का इधर रखा है उसके --

सलीम हेयर आर्ट और नीचे एक पोस्टर लगाया गया है एस के इलेक्ट्रॉनिक्स --

और जो क्रीम कलर का टू विंडोज दिखाई जा रही है।

और बहुत सारी ट्री है पानी है रिवर एंड ऑल --

और दो फ्लोर की है और--

और क्रीम कलर की बनाई गई है बाहर अह --

ऊं खड़े होके वो वेट कर रहा है वो जो --

औटिंग करवाने बैठे है वो अंकल फोन पे बात कर रहा है पीछे ए_सी है और फोटोस है ऊपर टी_वी है।

सामने दिए गए पिक्चर एक बहुत ही बड़े इमारत माउंटेन टाइप का है जो की एक टूरिस्ट प्लेस --

और यहां पे खिड़की दिख रही है ये घर--

सामने दिया गया पिक्चर एक सोफा शॉप की है।

दो अह बाइक्स हैं और पीछे जो बैग है वो पिंक कलर का है।

बड़ा सा ट्यूबलाइट है और कुछ स्पीकर्स है।

ओपन एरिया का है जहां पे मालगाड़ी पास होती है बहुत सारे टेंपू यहां पे पार्क किए गए हैं।

ये ऑरेंज कलर की पगड़ी पहनी है और उनके बाजू में ही एक अंकल खड़े है ऊपर --

टी शर्ट पहना है और नीचे डॉटेड एरिया में पेंट पहनी है और नीचे शूज है।

और चार पांच क्रीम कलर के रोलर पाइप्स हैं और ब्लू कलर के है।